बाहर से गिलास का गेट लगा हुआ है।

यह एक विद्यालय जैसा लग रहा है।

कछु पर डेकोरेशन किया गया है।

रोड पर गाड़ियां चल रही है।

आगे में एक मंदिर है बहुत सारे आदमी इसमें स्नान कर रहे हैं।

अगल बगल में आदमी खड़ा है घर है ।

ने बहुत सारे टीचर खड़े हैं।

यह चारों तरफ से घेरा हुआ है दीवार का रंग पीला है।

पीछे एक बहुत बड़ा महल जैसे बिल्डिंग बना हुआ है बगल में वृक्ष है सामने एक आदमी खड़ा है।

बहुत बैलूने ऊपर लगाए गए हैं।

यह एक एस_बी_आई बैंक है।

यह एक चिड़िया घर --

बहुत सारे घास भी जमीन पे हैं।

यहाँ सामने पर बहुत सारे तलवार रखे हुए हैं।

यह एक दुकान का दृश्य है।

अगल बगल में बहुत सारे आदमी खड़े हैं।

यह एक रूम का दृश्य है।

यहां बहुत ज्यादा आदमी पूजा करने आए हुए हैं ।

जिनमें आदमी पैसा छुटाने आए हुए हैं।

यह गोभी का साइज बहुत बड़ा बड़ा हो गया है।

इधर टेबल है टेलीविजन है ।

अंदर में दो आदमी बैठे हुए हैं।